आपको भी शायद इसमें दिखाई दे रहा होगा।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपको भी शायद ये पेंटिंग दिखाई देता हुआ नजर आ रहा होगा।